बाहर एक पोस्टर है जिसमें लेस लिखकर प्रचार किया गया है।

ऊपर बहुत सारी घंटियां हैं।

इस दृश्य में दिखाया गया यह एक नर्सरी है यहां अलग अलग तरह के पौधे फ्लावर रखे हैं।

के पास में एक टेबल और एक चेयर नजर आ रहा है जोकि वाइट कलर का है ।

इस दृश्य में एक छोटा सा हॉल नजर आ रहा है जिसमें से एक टेबल और दो चेयर लगे हुए हैं।

पूरा मिट्टी से एक आया हुआ रास्ता है जिसके ऊपर छोटे छोटे पौधे बहुत बड़े बड़े पत्थर है।

उसके ऊपर एक येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कॉपरेशन एल_टी_डी नजर आ रहा है।

इसमें लोहे का ग्रिल दिया गया है।

इसमें से एक लड़की है जिसने परी का ड्रेस पहना है और तीन लड़के हैं जिसने फौजी का ड्रेस पहना है ।

इस दृश्य में दिखाया गया है यह एक गेट के बाहर का स्थान है।

यहां तीन गेट दिख रहे हैं जिसमें की मैरून कलर के गेट लगे हुए हैं।

व्हाइट कलर का कपड़ा से डाइनिंग टेबल को ढका गया है।

बगल में दो खिड़कियां है जिसमें व्हाइट कलर पर्दा लगा गया है उस--

के बगल में एक रैक है जिसमें कि मिरर से कवर किया गया है और लकड़ी से बनाया गया है ।

नीचे में दो येलो कलर के और सिल्वर कलर के गेट लोहे से बना हुआ है।

आस पास बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

यहां पे दो व्यक्ति बाइक में आ रहे है जिसमे ग्रीन कलर का शर्ट पहन के रखा है।

दृश्य में दिखाया जा रहा हैं एक बहुत लंबा मकान है जिसमें की कुछ लिखा गया है रेड कलर से।

जिसमें दिखाया गया है यह एक स्टेज है जिसमें वाइट कलर का मंदिर बना हुआ एक फोटो रखा गया है।

सामने एक टेबल रखा हुआ है पास में एक व्यक्ति खड़ा है।

इस दृश्य में दिखाया गया यह एक स्टेशन है जो की मथुरापुर नाम से है।

एक व्यक्ति खड़ा है।

इस दृश्य मे दिखाया गया है दो क्रिसमस ट्री है दोनों में से लाइटिंग से डेकोरेशन किया गया है।

चारों तरफ घास ही घास भरा हुआ है ।

ऊपर से व्हाइट लाइटिंग रखी गई है।

इसके आस पास बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

यहां पे गोल बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है।

इस दृश्य मे दिखाया गया तीन मकान नजर आ रहा है।

उसके ऊपर ईंटों की घेराव किया गया है।

कि इस प्रकार है ग्रीन कलर का है येलो कलर का है वाइट कलर का है मिक्स ग्रे विद व्हाइट है।

यहां बैठने के लिए व्हाइट सीट लगी हुई है।

नीचे एक रेड कारपेट बिछाया गया है ।

इस दृश्य में दिखाया गया यह एक पार्क का छोटा सा स्थान है।